मुझे यहां पर चार पिलर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर ब्लैक कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे एक इंसान ब्लैक कलर की शर्ट पहन कर बैठा हुआ दिख रहा है।

यहां मुझे कुछ पत्थर की चट्टानें दिखाई दे रही है।